ये घर बना हुआ है ये इधर ईंटें लगी हुई हैं यह वो पड़ा हुआ है प्लास्टर टाइप का ये ऊपर की मैदान जैसी छज्जा बना दिया गया है।